यह एक ऑटो रिक्शा लग रही है यहां कुछ सीढ़ियां भी है।

यहां एक एक्टिवा भी रखी हुई है जो सफेद रंग की--

ऊपर की तरफ हार टंगे हुए हैं जो बहोत सुंदर लग रहे हैं।

यह स्टेशन की फोटो है यहां रेलवे की पटरियां दिख रही है।

जहां कुछ लोग खड़े हुए हैं और ऑर्डर दे रहे हैं।

यह श्री सवारियां टी स्टॉल स्वीट्स और नमकीन की--

और बलून से की गई है बलून सफेद व लाल रंग के हैं।